यख फणा कई सारा मकान छन यख फणा रंगला पिंगला मकान छन यख फणु टीन कु छप्पर छा यख फणु हरयूं भरयूं मैदान कर छा।

यख फणा कई सारा फौजी भी छन यख फणा कई सारा लोग भी छन यख फुण हरयां भरयां डाला भी छन पिछाड़ी फुण कई सारा दिखेण लग्यां।

फणु एक बड़ु बारिकु हरयूं भर्युं स्टेडियम कर छा।

यख फण मैदानम कई सरा लोग छन यख फणा अब क्रिकेट का टूर्नामेंट होंदा छन यख फुण बिजली कु खम्बा छा पिछाड़ी फुण हरयां भरयां ढोकरा छन हरयां भरयां ढालडा छन कई सारा हरयां भरयां डाला भी छन यख फणा।